में हम देख रहें हैं की यहाँ पे उम बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई है फोर व्हीलर फोर व्हीलर रेड कलर की निचे बाल्टी भी रखी है कुछ बहुत सारी बाइकें वगैरा खड़ी हुई है लाइन से शायद कोई पार्किंग वगैरा है।

हम देख रहे हैं कोई रेलवे स्टेशन है जहाँ पे बहुत सारी पटरियाँ दिखाई दे रही है ट्रेन की और ऊपर की तरफ हम देखेंगे कुछ ब्रिज टाइप से बना है जहाँ से लोग निकाल के जा सकते हैं।

इसमे हम देख रहे है कि एक बस खड़ी हुई है बहुत पुरानी बस नजर आती है ब्लू कलर और व्हाइट कलर की है बहुत पुरानी है।

और दो बच्चे बैठे हुए है और अंदर की तरफ हम देखेंगे कोई सैलून है सैलून में शायद कोई बाल वाल कटिंग होती है कोई दुकान बनी है बड़ी।

और कुछ इंसान दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे बड़ा सा हॉल है सोफे बगेरा लग रखे है वाइट कलर के और हम देखेंगे की यहाँ पे चेयर्स लगी हुई है बहुत सारी ।

जंगल है तो जंगल मे नदी है तालाब है पानी भरा है।